इस पिच्चर में हम लोग देख सकते हैं| एक ब्रिज का पिच्चर है जिसमें ब्रिज के अंदर से बहुत सारा पानी बाहर आ रहा है।

ऊपर जो सीलिंग बनाया हुआ है वो भी ऑरेंज कलर में दिया हुआ है एवं धूप में --

इस पिक्चर में हम लोग इसमे भी एक सब्जी का दुकान देख सकते हैं जिसमे गाजर लहसुन प्याज़ --

इस पिक्चर में हम लोग देख सकतें हैं | ये एक स्टेज - स्टेज बनाया हुआ है बहोत ही खूबसूरत | जिसमें बीच में दोनो तरफ ऊपर में मयूर जैसा ब --

उसके सामने पानी का एक फुहारा लगा हुआ है लाइट है सामने बाइक खरी है। एक लोग दिख रहा है

और एक सुखा पेड़ दिख रहा है जिसमें एक पंछी बैठा हुआ हैचारों तरफ घना जंगल और बरा -बरा पेड़ भी दिख रहा है। और इस पिक्चर में कुछ नहीं दिख --

कोई सुपारी का पेड़ व आसमान में बादल बहोत घने हैं एक और रस्ता के साइड में सीरियल वाइज लैम्पपोस्ट भी लगाया हुआ है बाईं तरफ भी --